लोगो को यहाँ ए.टी.एम. में आना चाहिए और अपने पैसे खाते जमा करना चाहिए इसमें और आके अपना पैसा निकल सकते है।

और बहुत अच्छा से सजाया गया है लोग खूब उम्र भीड़ पर रहे है। ये माता सबको आशीर्वाद देते है।

और यहाँ गाड़ी भी लगा हुआ है पीछे में और सड़क भी है। बाइक भी खड़ा है। देखने में अच्छा लग रहा हैं।